अच्छा नजारा है यहां इतना मस्त लग रहा है देखने में हरा-हरा पार्क जैसा --

कर लग रहा हैबहुत अच्छा लग रहा है बहुत मस्त लग रहा है आपलोग भी देख सकते है कितना अच्छा --

सब कोई लेके खा रहे हैं मस्त कर रही हैं मस्ती कर रहे हैं।

बहोत अच्छा लग रहे हैं सारे बच्चे बहोत अच्छा काम कर रहे हैं मत पूछिए अपने-आप में काला बना रहे हैं बहोत सुंदर काम --

यार कितना मस्त लग रहा है बहुत सुंदर लग रहा है देखने में बहुत अच्छा --

यहां पे देख सकते हैं इतना बड़ा-बड़ा मछली है इतना मस्त मछली है ये मछली भी कहने लायक नहीं है इतना भयंकर मछली खाने में इतना टेस्टी लग --

यहां पे मैगी पास्ता सब चीज बेचा रहे है हर चीज का यहां पैकेट मिलता है ये क्वालिटी बहुत अच्छा है सामान का इतना मस्त मत पूछिए आपलोग भी देख सकते है।

इधर ग्राउंड है ग्राउंड में भी बहुत अच्छा जगह है मत पूछिए बहोत सुंदर और बहोत अच्छा है देखिये देख सकते हैं आप लोग भी कितना अच्छा --

यहां पे देखिए कितना बड़ा बिल्डिंग है इतना अच्छा बिल्डिंग है मत पूछिए बहुत भयंकर बिल्डिंग है देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है इतना सुंदर बिल्डिंग है।

ये मॉल का दुकान जैसा ये डिजाइन है एक मॉल जैसा ही लग रहा है सारा चीज का पैकेट पैकेट है ये --